और यहां पे भी है जो बड़े-बड़े पेड़ है और छोटे-छोटे भी यहां पे और यहां पे कंपाउंड भी मारा गया है।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

और यहां पे बहोत सारे बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पे धूप भी नजर आ रही है।